बैठने के लिए व्यवस्था किया गया है अंदर झाड़ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है एक गड़ा जैसा किया गया है जो --

अगल बगल हरी हरी झाड़ियाँ दिखाई दे रही है कुछ बड़े बड़े पूल दिखाई दे रहे है जिस पर लाइट की तारे गई हुई है नीचे भूमि देखि जा सकती है।

यहा पर कुछ घास जैसा जमा हुआ है तथा आगे कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

पीछे कुछ धरती दिखाई दे रही है जिस पर हरे हरे घास उगे हुए है अगल बगल कुछ झाड़िया दिखाई दे रही है कुछ बेरीकेट जेसे भी दिखाई दे रहे है आगे कुछ ईंटे के अ नुकीला जेसे निकाले गए है।

आगे एक अ पीले कलर की वह रंगी हुई बिल्डिंग जेसी दिखाई दे रही है जिसकी कुछ खिड़कियां भी दिखाई दे रही है।

एक बहुत बड़े बड़े पिलर भी दिखाई दे रहे है नीचे कुछ काउन्टर जेसा बना हुआ है।

का एक पोल दिखाई दे रहा है जिससे एक तार गया हुआ है अंदर कुछ बाउन्ड्री किया गया है।

यहा पर एक बड़ा सा घर देखा जा सकता है पीछे कुछ बाउन्ड्री जेसा दिखाई दे रहा है।

रोड जेसा दिखाई दे रहा है ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है आकाश मे कुछ बादल भी दिखाई दे रहे है।